और दूर बहुत सारे पहाड़ भी है।

और बाहर मैटर टाइपिंग इंग्लिश हिंदी चिपकाया हुआ है।

और घरों के पीछे लंबे लंबे पैर भी हैं।

एक पानी फिल्टर और एक पेड़ भी बीच में है।

दुकान के बाहर पोस्ट भी लगाए हुए हैं।

दुकान के ऊपर कि बिल्डिंग नहीं बने हैं।

और बहुत सारे लोग बैठकर काम कर रहा है।

और पीछे बहोत सारे जंगल और पहाड़ भी है।

गेट के अंदर दो बड़े बड़े बस है।

गोवी का खेत दिखाई दे रहा है।

निचे में ग्रीन कलर का--

तिरंगा भी डिखाई दे रहा है।

में दो गाड़ी अलग अलग पार्क किया हुआ है।

डस्टबिन ब्लू कलर का भी है।

कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहा है।